मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिस चित्र में एक व्यक्ति नौका पर चढ़ कर अपनी --

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिस चित्र में एक बहोत ही बड़ा हाल है। वहां एक स्टेज है और बहोत सारा --

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिस चित्र में एक बहोत ही बड़ा मैदान है और उस मैदान में बहोत सारे व्यक्ति हैं।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में एक दुकान है और इस दुकान का नाम विगनान बुक सेंटर स्टेशनरी है।

और वहां पर ब्लू रंग करके एक बहोत ही बड़ा टेंट है लगाया गया है और वहां एक भी व्यक्ति नहीं है।